जहां पे मैं एक गेट देख पा रही हूं।

दूसरी मंजिल पे रेलिंग भी बनी हुई हैं। आगे में एक बड़ा सा गेट देख पा रही हूं।

सामने मैं एक मकान देख पा रही हूं जो कि कर्कट का बना हुआ है।

सामने मैं एक नदी देख पा रही हूं।